और यहाँ एक काले कलर की कैप लगे हुए नीले कलर का हाथ में फ़ोन लिए हुए हैं।

और वह हाथों में एक्सरसाइस म्म मशीन को लिए हुए है और एक ट्रेनर उसको ट्रेनिंग कर रहा है।

और ऊपर की तरफ कुछ गुफा जैसी बानी हुई है और एक पत्थर पर --

एक लड़की के हाथ में काले रंग का मोबाइल है और उसके पीछे दूसरी लड़की खड़ी है और उस दूसरी लड़की के पीछे द सिटी कैफ़े बना हुआ है।

जो सफ़ेद कलर की टोपी पेहने हुए हैं।

एक लेडीज खड़ी हुई हैं जिनके हाथ में ऑरेंज कलर की थैली है।

जिसमे एक आदमी बैठा हुआ है और जे.सी.बी. के पीछे भी एक आदमी खड़ा हुआ है।

और पत्थर के नीचे हमें हरी-हरी घास लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

ऑटो काले रंग का है।

ऑरेंज कलर के गेंदे के फूल भी लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

में एक लड़का साइकिल पर सवार है।

और इसके चारो तरफ गिट्टी डली हुई है।

जिसका नाम चिकित्सा महाविद्यालय है।

के अंदर बहुत भीड़ है और बाहर भी बहुत भीड़ दिखाई दे रही है।

कॉलोनी में आमने-सामने घर बने हुए हैं।

इस चित्र में हमें सुविधा काउंटर --

और बैट रखे हुए हैं।

और लाल गुलाब फूल की माला है।